एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

और आसमान दिखाई दे रहा हैं कुछ बदल भी दिखाई दे रहे हैं रास्ता दिख रहा है।

और एक आंगन दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ हरी घास लगी हुई दिख रही है।

और आसमान दिखाई दे रहा है।

और कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं एक पुल दिखाई दे रहा है।

और कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग चलते हुए हैं।

सब ने टोपी पहनी हुई दिखाई दे रही है और कुछ --

कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है।